प्रकृति के द्वारा बनाया गया सौंदर्य जो बहोत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है।

यहां पे बहोत ही ऊंचे ऊंचे--

यह एक गोडाउन है यहां पर अलग अलग परकार की खादें रखी गई हैं।

में काफी छूड़ियां पड़ी हुई है।

फूल और डेकोरेशन के पेड़ पौधे बेचे जा रहे हैं यहां पे बहोत से लोग--

हरी हरी घास कुछ जानवर भी दिख रहे हैं और यहां पड़ हमें--